अपने रंग-बिरंगे पेपर में कुछ काम कर रहे हैं।

यह एक मंदिर है और यह मंदिर हाजीपुर में है।

और यहाँ पे एक आगे घर भी है यहाँ पे कई आदमी रहते हैं और यह बगान काफी बड़ी है ।

किताब खरीदने यहाँ पे हर किताब मिलती है। हर क्लास की किताब मिलते है।